उनकी अ छत का कलर सफेद है और दीवारो पर नीला और लाल रंग--

तीर कमान के साथ है घोड़े के ऊपर बेठा है।

ऊपर और भी पेंटिंग्स लगी हुई हैं एक डोर है।

जिस थ्री सिक्स्टी लोगों लगा हुआ है एक वाच है।

फोन पे का क्यूआर कोड भी पड़ा हुआ है पेमेंट के लिए बहुत ही अच्छा डिजाइन है।

बहुत सारे लोग अपने पोतों को पूजा में मसरूफ हैं ये--

की लड़किया --

ये पूरी गाड़ी को सजाया गया है लोग इसकी पूजा कर रहे हैं।

कि ये एक मंदिर है जिसमें लोग अपने बुत की पूजा करने आए हुए हैं।

कुछ फाउंडेशन वाले बच्चों में फ्री यूनिफॉर्म --

ये एक बाजार की तस्वीर है जिसमें लोग मोटरसाइकिल पर पैदल--

और ऑटो में सफर कर रहे हैं ऑटो भी खड़ा है।

बिल्डिंग्स हैं बाटा का स्टोर है और--

थंब पैड्स अ डिजिटल मोहरे डेट वाले मोहरे--